और इसका नंबर है डब्लू बी थ्री एट --

एक लड़का बैठ कर फ़ोन दिख देख रहा है ।

एक पुराना घर है जिसमे बहुत सारी खिड़की --

हर बिल और ये घर उजले कलर से पेंट किया हुआ।